जो नीले रंग की है और इन कुर्सिओं पर विभिन्न विभिन्न कलाकारी की गई हैं। विभिन्न विभिन्न डिजाइने भी बनी हुई हैं।

यह एटा के एक मैदान की तस्वीर है जहा बहोत सारे बचे खेलते हुए दिखाई दे रहे हे और कुछ बड़े क्रिकेट भी खेलते हुए दिखाई दे रहे हे।

जो काले रंग का है और उसकी चोंच पीले रंग की है और उसके पैर भी पीले रंग के हैं।

पानी भरा हुआ है और घास भी लगी हुई है और ऊपर की तरफ लाल-लाल आसमान दिखाई दे रहा है और कुछ पेड़ भी लगे हुए हैं।

यह एटा के एक नदी की तस्वीर है जहाँं पर दो व्यक्ति चप्पू द्वारा नाव चला रहे हैं।

यह एटा की एक पौधशाला है। जहाँ पे बहुत सारे पौधे रखे हुए हैं और एक व्यक्ति हाथ में अमरुद लिए खड़ा है।